इस चित्र को देख के पता चल रहा है कि--

जिसमें बहुत सारे लड़के एक्सरसाइज कर रहे हैं।

यहाँ हम देख सकते हैं मॉल है।

और उसको वाइट और रेड से पेंट किया गया है।

और इसे लाल कलर का स्ट्रक्चर बनाया गया है।

और बहुत बड़ा-बड़ा नारियल का भी पेड़ हमें दिख रहा है और बीच में बड़ी सी नदी दिख रही है।

चित्र लग रहा है जिसमें दो बड़े टेबल और बैठने का बेन्च है।

और ऊपर पंखा है और बहुत सारी पीला कलर की लाइट है।

दो-तीन मछवारे मछली बेच रहे हैं छोटे-छोटी।

इस चित्र में हम देख सकते हैं यह जिम का चित्र है।

और दीवाल है जिसको पीला कलर का दीवाल है।

और इसमें एक शीशा दिख रहा है एक ए_सी_ दिख रहा है।

और एक पोस्टर है जिसमें एक महिला एक पुरुष और एक बच्चे हैं।

इस चित्र में हम देख सकते हैं यह बिल्डिंग का चित्र है।

और दो-तीन पेड़ पौधे भी हैं।

और आसमान बिल्कुल साफ लग रहा है कलर काला लग रहा है।

और ऊपर से येलो ब्लू लाइट निकल रहा है और वाइट लाइट भी।

और वाइट कलर और ब्लैक कलर और यलो कलर का फुकना भी फूला हुआ है।

और बहुत सारे कित कप रखे हैं।

ऊपर भगवती मिल्क पावर का बोर्ड लगा है।

बहुत सारे रैक में बहुत अलग-अलग प्रकार के सामान रखे गए हैं।

और एक कैफे है जिसमें दो आदमी बैठे हैं।

और पीछे एक सेवेन अप का डिब्बा है जिसमें दो गेट हैं।

और पीछे दो आदमी बात कर रहे हैं।

इस चित्र में बहुत बड़ा घर दिख रहा है।

वाइट कलर और ग्रे ब्लू --

जिसमें एक बच्ची झूले से झूल रही है।

और दो महिलाएं बात कर रही हैं।

और पीछे बहुत सारे बच्चों के खिलौने हैं जैसे कि टैडी बियर ।

और पीछे अगल-बगल बहुत सारी पुरानी-पुरानी बिल्डिंग है।

स्वच्छ सर्वेक्षण दो हज़ार बाईस का एक पोस्टर बना है और बहुत सारे आदमी आदमी भी आवा जाही कर रहे हैं।

और एक स्ट्रीट लाइट भी देख सकते हैं।

और ये दो-तीन मंजिला ईमारत है।

और एक टेबल है और एक क्रीमी कलर का कुर्सी है।

और एक बाहर वैन है जिसका कलर वाइट है।

ये चित्र एक कंकाल दिख रहा है।

जिसमें सभी आदमी बेच रहे हैं और एक--

माली फूल भंडार के पास जिसमें अलग-अलग प्रकार के फूले हैं।

और दो एक छोटे बड़ा फायर एक्ट्रेमली है।

इस चित्र में हम देख सकते हैं कि यह एक जिम का चित्र है।

चॉकलेट के हैं ग्लूकोज के डिब्बे हैं।

और इसको ग्रीन कलर का पेंट भी किया है।

और सभी में गिफ्ट के सामान रखे गए हैं जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का।

इसको क्रीमी कलर से पेंट किया गया है।

जिसको पीला कलर से पेंट किया गया है और उसके गेट का कलर ब्लू है।

और इसमें बहुत ज्यादा बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं।

इस चित्र में देख सकते हैं एक कैफे है जिसका नाम इवा द कैफ है और बाहर एक--

इसके ऊपर से फुकना लगाया गया है और पीछे एक बड़ा घर तीन मंजला घर पता चल रहा है।

जिसके बाहर बहुत सारी बोरा रखे गए हैं।

और बह बहुत सारे चॉकलेट ये सब का सामान मिल रहा है।

इस चित्र में हम देख सकते हैं ये किसी दुकान का चित्र है जिसमें दो आदमी काम कर रहे हैं।

और ऊपर बहुत सारे लाइटें लगी हैं।

विश्व रक्तदाता का बोर्ड लगा है।

और अगल-बगल के मकान जिसको पीला कलर से पेंट किया गया है।

और सामने बिना पेंट वाला मकान है और कच्चा सड़क है।

कुछ काम कर रहे है सम्मान समारोह कर रहे है बहोत ज्यादा भीड़ है महिला पुरुष बच्चे भी आए है।

इस चित्र में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे सामान को रैक में रखा गया है।

जैसे कि इसमें है पार्ले जी जिसका दाम है साठ रुपया।

और एक बूढ़ा आदमी बैग और झोला लेकर बैग पछार रहा है बस पे।